खंभा बना हुआ है और दोनों साइड दिवाल है जो नीचे पिंक --

पेहने हैं और सर पर एक टोकरी रखे हैं जिसमें बहुत सा सामान--

और दो मोटरसाइकल एक स्कूटी खड़ी हुई है साइड में एक नीले कलर का--

बॉर्डर बनी हुई है कुछ कार और मोटरसाइकिल दिख रही हैं सामने बड़ा सा ग्राउंड है।

और दो महिलाएं बैठी हुई है अलग अलग दुकान है और सामने एक आदमी--

मेला दिखाई दे रहा है और दुर मुझे पहाड़ दिख रहे है।

मने बहोत सारे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर सफेद आसमान देख--

बहुत सी चोटियां बनी हुई हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही हैं और बीच में कहीं रंगीन--

पैंट पेहने हुए है पीछे एक काला बैग टांगे है हाथ में घड़ी--

पीले कलर की है जिसमें एक पीला पोस्टर लगा है जिसमें काले--